रोकने के लिए स्टैंड लगे हुए हैं जिससे ऊपर सैनिक का बोर्ड लगा हुआ है।

सामने तीन कलर तीन ब वो लगे स्टाल लगे हुए हैं जो काफी बड़े हुए हैं।

उनके बगल में एक हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं उसके भी बगल में दूर से लंबा लंबा खेत जैसा दिख रहा है।

यह कोई अमुल कंपनी की दुकान है जिसके बाहर बहोत सारे गब्बरों का गेट लगा हुआ है।

सामने एक ये भी मेहरून कलर का भी पट्टी बनी हुई है।

यह किसी फैक्ट्री की तस्वीर है जिसमें स्टील के काफी ज्यादा सामान रखे हुए हैं।

एक पेड़ बीचों बीच लगा पार्क में लगा हुआ हैं जिसके पीछे बहुत सारे पौधे बड़े बड़े से पौधे लगे हुए हैं।

यह एक लाइब्रेरी का चित्र है जहां पर एक लोग खड़े हुए हैं एक किताब लेकर जिस पे लिखा है एवरी मैनस वार ।

जिन्होंने मैट बिछा रखी है मैट पे बैठ के ये लोग योगा कर रहे हैं।

सामने अंदर छत में एक बोर्ड ट टंगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कार्ड एव टोकन जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है।

दो लोगों ने लाल बैग टांग रखा है तीन लोगों ने कुछ नहीं टांग रखा है।

या कोई सरकारी बिल्डिंग या कार्यालय है जो वाइट और रेड कलर का पूता हुआ है।

यह एक मस्जिद का चित्र है जहां पर लोग अपने हाथ पैर धुलने के लिए बैठते हैं।

सामने ब्लैक कलर की एक मेज़ टाइप में रखी हुई दिख रही है।

यह किसी मॉल की तस्वीर है यहां पर लोग चेयर पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं सामने एक पीला कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

और उसके पीछ बगल में सी_सी एयरपोर्ट इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसपे जीरो थ्री लिखा हुआ है।

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ गोल्डन हार्वेस्ट फिफ्टीन ।

जिसकी बाउंड्री वॉल जो है वो वाइट और यल ब्लू कलर में है।

चित्र में एक ला काली कलर की थाली दिख रही है जिसमें चार लेग पीस रखे हुए हैं और उनके पकड़ने की साइड पे सिल्वर कलर की पै अं रैपिंग हुई है।

यह कोई जगह है जहां पर बहोत सारे बेल के पेड़ लगे हुए हैं।

अ पपीते का भी पेड़ लगा हुआ नजर आ रहा है। सामने एक स्टेयर बनी हुई है चढ़ने के --

इसके अंदर काफी लाल गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं।

चित्र में भारतीय डाक का एक ए_टी_एम नजर आ रहा है जिसका जो पोस्टर है पूरा रेड कलर में--

एक लोगों ने ब्लू और व्हाइट और ब्रू की टी शर्ट पहन रखी है जिनकी गाड़ी होंडा है।

स्वीर यह तस्वीर दुर्गा पूजा की है जहां पे दुर्गा माता और बहुत सारी म माताएं जो हैं वो खड़ी हुई हैं।

लोग सेल्फी ले रहे हैं सामने दो लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं जिसके दूसरी साइड में स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं।